एक पेड़ के पास एक दरगाह दिखाई दे रही है और सब तरफ से जाली लगी हुई है।

और धूप नजर आ रही है।

टेबल पर कंप्यूटर रखा हुआ है।

और वहां पर सोपा और चेयर दिखाई दे रही है।

सबने सर पर टोपी पहनी हुई है।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

बहुत सारे मशीन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

होटल नजर आ रहा है सब तरफ टेबल और कुर्ची दिखाई दे रही है।

और इस नाव में दो जेंस और एक लेडीज बैठी हुई है साइड से सब तरफ झाड़ नजर आ रहे हैं।

और दूसरे टेबल पर बुक्स रखे हुए है।

और बहुत सारा सामान वहां पर दिखाई दे रहा है खिड़की नजर आ रही है।

दीवाल नजर आ रही है बहोत बड़ी दीवाल नजर आ रही है सब तरफ से झाड़ लगे हुए है।

और बीच में पानी को पानी रुका हुआ है।

कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ बैठे हुए हैं।

टेबल पर चेयर नजर आ रहे हैं।

और सब ख खंबे नजर आ रहे हैं और घास लगा हुआ है आसमान दिखाई दे रहा है।

एक ट्रक सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

रेस्टोरेंट बार नजर आ रहा है।

एक आदमी कपड़ों को इस्त्री कर रहा है।

जिम कर रहा है बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हुए हैं।

तीनों ने अपने हाथों को एक साथ रखकर सामने की ओर देख रही है।

और सामने अंदर की ओर लाइटिंग लगी हुई है ओम दिख रहा है पर्दे लगाए हुए हैं।

टेबल पर सबके टेबल पर लैपटॉप दिख रहे हैं और फोन भी नजर आ रहा है सब तरफ बलून लगाए हुए हैं।

बहुत सारे कपड़ों की दुकान लगी हुई है बहुत सारी मूर्तियां वहां पर रखि हुई हैं।

अलग-अलग ड्रेस पहने हुएबनाए हुए हैं।

चेयर भी रखी हुई है एक आदमी वहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

दीवार पर वेअबोर्ड लगा हुआ है और टेबल पर बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं।

झाड़ भी नजर आ रहे हैं।